इस चित्र मै हमे झोपडी के अकार का एक घर दिखाई दे रहा है।

और दो लोग भी दिखाई दे रहे है।

इसके नीचे दूर-दूर तक हरे पेड़ो से भरा--

एक बच्चा पगड़ी लगाए हुए दिख रहा है एक आदमी नीले कुर्ते में दिख रहा है।

हरी -भरी घास और पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे है।

हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसकी आगे की ओर छोटी -छोटी पतियों से कई छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक मगरमच्छ लेटा हुआ है और हरी -हरी घास लगी हुई दिखाई दे रही है।